रवींद्र टाकुर जी की तस्वीर मतलब स्टैचू बनी हुई है।

जैसे कि सफेद बैलून है ग्रीन बैलून है मतलब हरा बैलून है और --

और ठीक उसके बगल में एक हेलमेट भी रखा हुआ है।

इस पिक्चर में हमें कई सारे लोग नजर आ रहे हैं और --

पहले नंबर पे जो व्हाइट कार है वो देखने में काफी सुंदर लग रहा है यह एक --

और इस वृक्ष के आस पास हमें एक छोटा सा झोपड़ी भी नजर आ रहा है।

इस बुक स्टोर में अनगिनत किताबें रखी हुई हैं और --

जो कि देखने में काफी सुंदर लग रहा है और जो इसकी दीवारें हैं --

और इस पौधों के साथ साथ बहुत सारे गज भी यहाँ पे मौजूद है।